जहां में कई सारे माले बने हुए नजर आ रहे है।

यहां बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं जिसपर लाइटे लगी हैं।

यहां ऊपर में हमें एक नीला रंग का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसे सफेद कलर के लकड़ी से पार्टीशन में बांटा गया है।

कुर्सियों पर से अभी तक पन्नी भी नही हटी है।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

अलग अलग कंपनी वाले बोर्ड्स लगे हुए नजर आ रहे हैं।

टू व्हीलर बाइक भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

अग्रवाल साइकिल स्टोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कार तथा सॉफ्ट टॉयज कुछ अलग अलग प्रकार के झूले मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक बड़ी सी दुकान नजर आ रही है।

स्वीर किसी ओपन रेस्टोरेंट का है।

वीरांगना ऊदा देवी पार्क लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां कुछ महिलाएं मौजूद दिखाई दे रही है।

यहां दो बिस्तर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहा हमे सामने की और इसका मेंन एंट्रेंस दिख रहा है।

जिस पर लाल कलर के बड़े बड़े होर्डिंग्स एवं नेम प्लेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दीवाल पर लाउडस्पीकर वाला बॉक्स भी लगा हुआ है।

यहां सामने की ओर में काउंटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी के भीतर हमें तीन चार नांव खड़ी दिखाई दे रही है।

सामने की ओर कुछ महिलाएं सफेद कलर की पोशाक में नजर आ रही हैं।

तथा ग्राहकों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है।

जो खरीदारी करने के उद्देश्य से यहां आई हैं।

यहां पर कई सारे विशालकाय पेड़ लगे हुए हैं।

यह किसी मॉल के गेमिंग जॉन का है।

यहां कई सारे डिजाइनदार लाइटें जो रंग बिरंगी जल रही है।

द सिटी कैफे योर गबरू हब लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बड़े बड़े नाम वाले बोर्ड्स लगे हुए हैं।

कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है।

उस पर लाल कलर की दरी बिछी हुई है।

एक संगीत वादक जो बैठा हुआ है।

अन्य सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

सफेद कलर के अक्षर से फन रिपब्लिक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बिजली के कई सारे तार भी नजर आ रहे हैं।

इस पर कई सारी लाइटें सफेद कलर की जलती हुए दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर में सामने की ओर एक डिजाइन दार भवन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां सामने की ओर इसका मेन गेट दिखाई दे रहा है।

आर्यन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कई सारी डिजाइन दार लाईटें एवं लतर वाले प्लांट्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें सामने कि ओर एक मेट्रो लगी हुई दिखाई दे रही है।